टल या रेस्टोरेंट के अंदर--

यह दृश्य एक भोजन का है और भोजन एक प्लेट के अंदर रखा गया है और भोजन--

यह दृश्य किसी उंचे से स्थान से लिया गया है जहाँ से--